एक अलमारी है जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे सामान रखे गए हैं।

एक ऑटो भी है एक आदमी और है।

बाल में बहुत सारे क्लिप लगाए हुए है।

एक लड़की बैठी हुई है जिसके बगल में हैंड वॉच रखा हुआ है।

एक औरत का हाथ दिखाई दे रहा है जिसने चूड़ी पहनी हुई है।

यह एक रूम का दृश्य है जहां पर एक आदमी व्हाइट कलर का पत्ता पर काम कर रहा है।

एक का कलर ऑरेंज है और एक पीला कलर का लगाया गया है।

एक टेबल है जिसमें छोटे से फूल लगे हुए हैं।

एक नल है जिसका कलर व्हाइट है।

मूर्तियों के नीचे छोटे छोटे गमले में गेंदे फूल लगाए गए हैं।

दो आदमी खड़े हैं एक आदमी ने रेड कलर का कोट पहना हुआ है एक ने येलो कलर का कोट --

यह बहुत सारे आदमियों का दृश्य है जिसमें बहुत सारे आदमी खड़े हुए हैं।

यह रोड का दृश्य है जहां पर एक आदमी स्कूटी चला रहा है।

ऊपर दीवाल में एक चित्र बने हुए हैं।

घर के बाहर द्वार में बहुत सारे आम के पत्ते लगाए गए हैं।

नीचे दो छोटे छोटे आसन लगे हुए है स्टील के मदद से पीलर बनाया गया है जहां तीन सीढ़ियां है।

टोकरी और डिजाइन दार गमले रखे हुए हैं।

टेबल में सॉस का बोटल और टिशू पेपर रखा हुआ है।

यह एक घर का दृश्य है जहां पर एक कार खड़ी हुई है जिसका कलर ब्लैक है।

एक पाइप रखा हुआ है जिसका कलर व्हाइट है।

यह एक दुकान का दृश्य है जहां पर एक बड़े से डब्बे रखे हुए हैं।

एक आदमी खड़ा है आदमी के बगल में एक छोटी सी गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है।

कार के बगल में एक फूल का पेड़ लगा हुआ है।